यह ट्यूटोरियल ब्लेंडर 259 में 3डी कर्सर के बारे में है
यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है
और आवाजने दी है
इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद हम सीखेंगे कि 3Dकर्सर क्या है
ब्लेंडर में 3डी कर्सर का उपयोग करके 3डी व्यू में नए ऑब्जेक्ट्स और ब्लेंडर में 3डी कर्सर के लिए स्नैपिंग ऑप्शन्स कैसे जोड़ें
मैं मानता हूँ कि आपको पहले से ही पता है कि अपने सिस्टम पर ब्लेंडर संस्थापित कैसे करें
अगर नहीं तो कृपया ब्लेंडर संस्थापित करने पर हमारा पहला ट्यूटोरियल देखें
3Dकर्सर क्रॉस हेयर के साथ लाल और सफेद रंग का वृत्त है जिसे आप ब्लेंडर स्क्रीन के केंद्र में देख सकते हैं
ब्लेंडर में 3Dकर्सर देखते हैं
इसे करने के लिए हमें ब्लेंडर खोलना होगा
यहाँ ब्लेंडर खोलने के लिए दो तरीके हैं
पहला डेस्कटॉप पर ब्लेंडर आइकन पर जाएँ
ब्लेंडर आइकन पर दायाँ क्लिक करें
ओपन पर बायाँ क्लिक करें
ब्लेंडर खोलने के लिए दूसरा और आसान तरीका है डेस्कटॉप पर ब्लेंडर आइकन पर बायाँ डबल क्लिक करें
यह ब्लेंडर 259 है
कृपया ध्यान दें कि यहाँ दिखाया गया स्क्रीन रेज़लूशन 1024 एक्स 768 पिक्सल है
ब्लेंडर इंटरफ़ेस में फ़ॉन्ट का आकार बढ़ा दिया गया है ताकि आप दिए गए सभी ऑप्शन्स को समझ सकें
इंटरफ़ेस फ़ॉन्ट का आकार कैसे बढ़ाएँ यह सीखने के लिए कृपया यूजर प्रिफरेन्सेस पर ट्यूटोरियल देखें
यह स्वागत पेज या स्प्लैश स्क्रीन के रूप में जाना जाता है
ब्लेंडर के बारे में सीखने के लिए यह कुछ उपयोगी संदर्भ लिंक दर्शाता है
स्प्लैश स्क्रीन हटाने के लिए अपने कीबोर्ड पर ESC दबाएँ या ब्लेंडर इंटरफेस पर स्प्लैश स्क्रीन के अलावा अन्य कहीं भी बायाँ माउस क्लिक करें
अब आप डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर वर्कस्पेस देख सकते हैं
3Dकर्सर क्यूब द्वारा घिरे स्क्रीन के केंद्र की दायीं ओर में है
हम कर्सर ठीक से नहीं देख सकते हैं इसलिए हमें क्यूब को डिलीट करना चाहिए
डिफ़ॉल्ट रूप से क्यूब पहले से ही चुनित है
इसे डिलीट करने के लिए कीबोर्ड पर डिलीट बटन दबाएँ
डिलीट पर बायाँ क्लिक करें
यहाँ अब आप 3Dकर्सर अच्छे से देख सकते हैं
3डी कर्सर का प्राथमिक उद्देश्य 3Dव्यू में जुड़े हुए नए ऑब्जेक्ट के स्थान निर्दिष्ट करना है
एड पर जाएँ
मेश पर जाएँ
क्यूब पर क्लिक करें
आप 3Dव्यू में नए ऑब्जेक्ट्स जोड़ने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट shift एएमपी आ बटन का भी उपयोग कर सकते हैं
एक नया क्यूब 3डी व्यू में जुड़ गया है
जैसा कि आप देख सकते हैं नया क्यूब 3डी कर्सर के रूप में उसी स्थान पर प्रदर्शित हुआ है
अब देखते हैंकि नए स्थान पर नया ऑब्जेक्ट कैसे जोड़ें
पहले हमें 3Dकर्सर को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करना होगा
ऐसा करने के लिए 3Dस्पेस में किसी भी स्थान पर बायाँ क्लिक करें
मैं क्यूब के बाईँ ओर क्लिक कर रहा हूँ
नया ऑब्जेक्ट मेश जोड़ने के लिए Shift और आ दबाएँ
उव स्फीयर पर बायाँ क्लिक करें
उव स्पेयर 3Dकर्सर के नए स्थान पर प्रदर्शित होता है
अब हम 3Dकर्सर के लिए स्नैपिंग ऑप्शन्स देखेंगे
ऑब्जेक्ट पर जाएँ
स्नैप पर जाएँ
यह स्नैप मेन्यू है
यहाँ विभिन्न ऑप्शन्स हैं
आप कीबोर्ड शॉर्टकट Shift और एस का भी उपयोग कर सकते हैं
सिलेक्शन टो कर्सर चुनित आइटम को 3डी कर्सर पर स्नैप करता है
उदाहरणस्वरूप 3डी कर्सर पर क्यूब को स्नैप करते हैं
क्यूब पर राइट क्लिक करें
स्नैप मेन्यू को ऊपर लाने के लिए Shift और एस दबाएँ
सिलेक्शन टो कर्सर पर बायाँ क्लिक करें
क्यूब 3डी कर्सर पर स्नैप होता है
अब क्यूब को दाईँ ओर ले जाएँ
ग्रीन हैंडल पर बायाँ क्लिक करें अपने माउस को पकड़कर रखें और बाईं ओर खींच लाएँ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
3डी व्यू में मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में अधिक जानने के लिए बेसिक डिस्क्रिप्शन ओएफ ब्लेंडर इंटरफेस के इस ट्यूटोरियल को देखें
स्नैप मेन्यू को ऊपर लाने के लिए Shift और एस दबाएँ
कर्सर टो सिलेक्टेड पर बायाँ क्लिक करें
3डी कर्सर नए स्थान में क्यूब के केंद्र पर स्नैप होता है
अगर आपके पास एक ही समय में एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स चुनित हैं मानिए क्यूब और उव स्फीयर है
कर्सर टो सिलेक्टेड दो चयनित ऑब्जेक्ट्स के केंद्र में 3Dकर्सर को स्नैप करता है
मैं दिखाता हूँ
जैसा कि आप देख सकते हैं क्यूब पहले से ही चुनित है
उव स्फीयर चुनने के लिए Shift और राइट क्लिक करें
तो अब आपके पास एक ही समय में दो चुनित ऑब्जेक्ट्स हैं
स्नैप मेन्यू को ऊपर लाने के लिए Shift और एस दबाएँ
कर्सर टो सिलेक्टेड पर क्लिक करें
3डी कर्सर दो चुनित ऑब्जेक्ट्स के केंद्र में स्नैप होता है
अब लेम्प पर Shift और राइट क्लिक करें
स्नैप मेन्यू को ऊपर लाने के लिए Shift एएमपी एस दबाएँ
कर्सर टो सिलेक्टेड पर क्लिक करें
3डी कर्सर 3 चयनित ऑब्जेक्ट्स के केंद्र में स्नैप होता है
3डी कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए 3डी व्यू में किसी भी बिंदु पर क्लिक करें
मैं नीचे बाईं ओर क्लिक कर रहा हूँ
स्नैप मेन्यू को ऊपर लाने के लिए Shift और एस दबाएँ
कर्सर टो सेंटर पर क्लिक करें
3डी कर्सर 3डी व्यू के केंद्र में स्नैप होता है
ऑब्जेक्ट्स को अचयनित करने के लिए कीबोर्ड पर आ दबाएँ
अब उव स्फीयर पर राइट क्लिक करें
इसे अचयनित करने के लिए आ दबाएँ
स्नैप मेन्यू को ऊपर लाने के लिए Shift और एस दबाएँ
कर्सर टो एक्टिव पर क्लिक करें
3Dकर्सर पिछले सक्रिय चयन उव स्पेयर के केंद्र में स्नैप होता है
3Dकर्सर अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है जब मॉडलिंग के समय एक धुरी बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है
लेकिन हम इसे बाद के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे
अब 3डी कर्सर का उपयोग करके विभिन्न स्थानों में 3डी व्यू पर नए ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने की कोशिश करें
उसके बाद स्नैप मेन्यू में स्नैपिंग ऑप्शन्स को खोलें
शुभकामनाएँ
तो अब ब्लेंडर 3डी कर्सर पर अपने ट्यूटोरियल को समाप्त करते हैं
यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद